हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर पटना और ईधर देखें कितनी सारी मतलब भीड़ है देखने के लिए और इसका मतलब समज में भी नहीं आ रहा है के एक साथ लोग ये कैसे निकलेंगें काफी सारे इक्कट्ठा हो रखे है ईधर लाइन से --

जो बैट्री से चार्ज होकर चलती है रेड कलर की मिनी मेट्रो है और ये भैया जो है --